लिबर ऑफिस calc में linking पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे:
calc में अन्य शीट्स का उल्लेख कैसे करें
calc में hyperlinks का इस्तेमाल कैसे करें
यहाँ हम operating system के रूप में उबंटू लिनक्स वर्ज़न 1004 और लिबर ऑफिस suite वर्ज़न 334 इस्तेमाल कर रहे हैं
यदि आपने दोनों स्प्रैडशीट्स सेव की हैं तो लिबर ऑफिस कैल्क आपको अन्य शीट के एक सेल से वर्तमान शीट के सेल में अन्य स्प्रैडशीट से एक सेल को रेफरेंस करने की अनुमति देता है
personalfinancetracker ods खोलते हैं
हमारी file की sheet 1 personal finance tracker के लिए spreadsheet सम्मिलित करती है
मैंने columns spent और received में कुछ राशियाँ जोड़ दी हैं
अब क्रमशः cost और spent के नीचे घटकों का कुल जोड़ निकालें
c9 उल्लिखित cell पर click करें और formula is equal to sum और कोष्ठकों के अंदर c3 colon c7 टाइप करें
फिर enter की दबाएँ
d9 उल्लिखित cell पर click करें और उसी formula का इस्तेमाल करके जोड़ निकालें
अब cell referencing का इस्तेमाल करके हम एक अन्य sheet पर cost और spent में कुल बकाया प्रदर्शित करेंगे
sheet 2 टैब पर click करें
यह नई sheet खोलता है
अब a1 उल्लिखित cell पर click करें और इसके अंदर शीर्षक component type करें
b1 उल्लिखित cell पर click करें और इसके अंदर शीर्षक balance type करें
अब heading के अंदर भागों के now प्रविष्ट करें
a3 उल्लिखित cell पर click करें और costs टाइप करें enter दबाएँ
costs के नीचे a4 उल्लिखित cell में अगला भाग spent प्रविष्ट करें
अब खाली cell b3 पर click करें
शीर्षक cost और spent में cells b3 और b4 के पास कुल बकाया होगा
जिसकी हमने शीट 1 में गणना की थी
यह referencing से करेंगे
cell b3 में cell reference बनाने के लिए input line के आगे equal to चिह्न पर click करें
tab sheet टैब में sheet 1 पर click करें
इस sheet में हम cell c9 पर click करेंगे जो column costs में जोड़ को रखता है
ध्यान दें कि input line में statement sheet 1 dot c9 प्रदर्शित होता है
अब input line के आगे check mark पर click करें
ध्यान दें कि sheet 1 में costs के नीचे data का कुल योग sheet 2 टैब में b3 से उल्लिखित cell में अपने आप प्रविष्ट हो गया है
उसी प्रकार से हम referencing के ज़रिये अन्य भागों के कुल योगों को प्रविष्ट कर सकते हैं
यदि यहाँ ढेर सारे data कंटेंट के साथ अनेक data शीट्स हो तो data का सार प्रस्तुत करने के लिए referencing बहुत लाभदायक हो सकता है
अब सीखते हैं कि calc शीट्स में hyperlinks कैसे बनाएँ
आप hyperlinks का इस्तेमाल एक spreadsheet के अंदर एक अन्य स्थान अन्य files यायहाँ तक कि वेबसाइट्स पर जाने के लिए कर सकते हैं
personalfinancetracker ods में personal finance tracker sheet 1 में है और बाकी का कंटेंट्स sheet 2 में है
मानते हैं कि हम sheet 1 से sheet 2 में जाना चाहते हैं
सबसे पहले sheet 1 टैब पर click करें
यहाँ b14 उल्लिखित cell पर click करें और sheet 2 प्रविष्ट करें
आप देखते हैं कि name sheet 2 input line पर प्रदर्शित होता है
अब input line में text sheet 2 चुनें
text चुनने के बाद toolbar में hyperlink icon पर click करें
hyperlink dialog प्रदर्शित होता है
बायीं तरफ document option चुनें
dialog box में target in document icon पर click करें
एक नया target in document dialog प्रदर्शित होता है
अब sheet option के आगे plus sign पर click करें
dialog box जो प्रदर्शित होता है उसमें sheet 2 option पर click करें
अब apply button पर click करें और फिर close button पर click करें
अब hyperlink dialog box से apply पर click करें और फिर close पर click करें
सामने cell में sheet 2 text के साथ चिह्नांकित sheet 1 टैब प्रदर्शित होता है
अब जब हम text sheet 2 पर click करते हैं यह हमें सीधा उस sheet में ले जाता है जहाँ हमें costs के लिए बकाया प्रविष्ट किया था
हमने एक hyperlink बना लिया!
hyperlink हटाने के लिए सबसे पहले hyperlinked text sheet 2 चुनें
अब दायाँ click करें और context menu से default formatting option पर click करें
text अब hyperlinked नहीं है
यह बिलकुल document के किसी भी साधारण text की तरह है
बदलावों को अन्डू करते हैं
इसी के साथ हम लिबर ऑफिस calc पर spoken tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे: calc में अन्य शीट्स को reference करें
calc में hyperlinks इस्तेमाल करें